यह तस्वीर एक गैरेज कि लग रही है। जहाँ दो कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक कार का उधर साइड मुंह है। एक कार का दोसरे साइड --

उसके आगे रेड कलर की मैट है।

और उसके नीचे मेन बिल्डिंग लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग का रंग देखने में सफेद लग रहा है और यहाँ --